और साइड में स्टेडियम है जो कि ऊपर में टीना लगा के है।

टुकड़ा करने वाला मशीन और उसके नीचे में बहुत सारा पत्थर भी है।

अ गरीब भी दिखाई दे रहा है।

यहां में बहुत बड़ा टॉवर दिखाई दे रहा है।

और सीढ़ी भी दिखाई दे रहा है टावर का ऊपर उड़ने का--

और टावर का सामने में घर भी दिखाई दे रहा है और घर का आगे में कपरा सूखा के दिखाई दे रहा है।

ये घर का अंदर मे दो गाड़ी है जो की एक वाइट कलर मे है और एक ब्लैक कलर मे है और इसका सामने मे दो चार भी है।

और पानी का सामने में एक फ्रॉट भी है।

ये बॉक्स जो है अलग अलग काट से बनाने वाला बॉक्स के अंदर में रखा हुआ हैं।

ये घर का अंदर में बहुत सारा सामान दिखाई दे रहा है।

और लाइट भी बहुत सारा दिखाई दे रहा है।

और ये घर को जो है येलो कलर से दिखाई दे रहा है।